रेड कलर की चटाई बिछी है और पीछे एक कंबल और रात का दर्श्य दिखाया गया है और ये लड़की काफी अच्छा --

एक राक्षस की भी है और शिव शंकर जी की भी है और सरस्वती मइया की है।

अ सिलेटी अ क्रीम कलर की जकिट पहने हैं टाई लगाए हुए हैं और भइया सीधे खड़े हैं।

बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं जो खूब लगन से पढ़ रहे है। खूब मेहनत से पढ़ रहे है ये लोग।

और ऊपर ऊपर जो छत है छत में से एक गुलदस्ता लटक रहा है जो बोहोत सुन्दर लग रहा है दिखने में बाकी सब जीने यानि की सीढ़ियों पे खड़े हैं।